हम्म्म बी.आर.वी. मॉडल स्कूल । ये बहुत अच्छा स्कूल है और शानदार बिल्डिंग बनी हुई है इसकी।

बहुत ही ज़बरदस्त। पूरा ग्राउंड बिल्कुल साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा गया है।